आगे में सीढ़ियों को भी देख पा रही हूं जहां पे--

यहां पर मैं एक मकान देख पा रही हूं जोकि बहोत ही छोटा दिखाई दे रहा है।

यहां मैं एक बड़ा सा हॉल देख पा रही हूं।

पीछे एक बड़ा सा खेत का मैदान दिखाई दे रहा--

जिसमें एक बुजुर्ग आदमी हाथों में डंडा लिए हुए हैं साइड में कुछ पेड़ है।

यहां पे मैं बहुत सारी गाड़ियों को खड़े और बहुत सारे लोगों को भी देख सकती हूं।

सारी कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाक मैं एक दिवार देख पा रही हूँ।